और एक बूढ़ा बुढ़वा हई | चश्मा पहिनले हई और मोबाइल रखले हई।

बहुत पुराना किला हई ओइ में पेड़ बहुत लागल हई।

और फूल लटकायल हेय और पीला कलर के कुछो हे है।

और पियर कलर से सजायल हय और ब्लू कलर के कुर्सी हय और लहठी लाल कलर और उज्जर कलर के है।

एगो आदमी हरा कलर के शर्ट पहलें हई और --

एगो आदमी फ़ोन से बात कर रहलइ उज्जर कलर के शर्ट पहनले हइ और जीन्स पहिनले हइ ।